ऊपर रूफ पे ब्लैक कलर का है और व्हाइट लाइट्स है।

यहां एक फ्लावर का मार्केट है।

मंदिर में झाड़ है और थोड़े लाइट्स लगा हुए हैं।

नीचे ग्रीन मैट पर सारे भक्तों जनों बैठ गए हैं।

ऊपर फैन और लाइट्स है।

कलर कलर के सारीज है काउंटर पे कंप्यूटर है और एक फैन भी है।

मैरून रेड कलर का स्कूटी प्रिपेयर कर रहे है।

तीन फ्लोर पे लाइट लगा हुआ है।

ये एक कपड़े का दुकान है इस पे सारे पंजाबी ड्रेस और साड़ियां लगा हुए हैं।

यहां एक इंटरनेशनल एकेडमी का फंक्शन चल रहा है।

एक व्हाइट कलर की कुर्सी है और ब्राउन कलर का इस गेट का ग्रेली भी है।

एक नारियल का झाड़ भी है।

ग्रीन ग्रीन कलर के सारे झाड़ है।

यहां ट्रेंड्स का बोर्ड है और दुकान के ऊपर भी ट्रेंड्स का बोर्ड है।

ग्रीन कलर के मैट पर एक्सरसाइज करने के लिए एक टायर है।

यहां कार का गैरेज है।

यह एक नदी किनारे पे--

यहां एक लाल कलर का बिल्डिंग है।

यह एक कंपाउंड वॉल है।

दो रेड कलर के कार है रेड कलर के कार पे पिंक कलर का पट्टी है।

स्ट्रीट लाइट्स है और एक रेड कलर का बेंच भी है।